रेलवे स्टेशन है छोटा-मोटा रेलवे स्टेशन जिसमे रेलवे ट्रेक भी है और ये जो है की बैठने वाले कुछ भी है उसके ऊपर ---

यह एक बस स्टैन्ड है।

और इसमें रिक्शा वाले हैं ऑटो है बहुत सारा बहुत सारा पब्लिक है--

--ओर नीचे टाइल-टाइल बीछाया हुआ है और जो है बगल में इसके पीछे घर है उसमे चदरा का ऊपर से कलर क्या हुआ चदरा का भी घर है।

यह एक जो है| एक कोचिंग की तरह है इसमें कई सारे स्टूडेंट बैठा हुए हैं| उपर में सीलिंग में कोई डिज़ाइन भी है और यह सामने बोर्ड पर जो है कि बोर्ड पर कुछ लिखा हुआ है ब्राउन कलर का जो है।